वह एक फर्श पर खड़े होकर नृत्य करती हुई दिखाई दे रही हैं।

और यहाँ पे माला भी बेचीं जाती हे।

ताथ ही दुकान पर बोर्ड लगें हैं।

हमें एक खम्बा भी नज़र आ रहा हैं।

जो कार्पेट पर एक्सरसाइज करते हुए हमें दिख रहें हैं।